यहां बहोत सारी किताबें हैं।

यह दुकान बहोत बड़ी--

यह उत्तर रेलवे चंडी मंदिर लिखा है।

यहां एक सरदार जी लाल पग पहने खड़े हैं।

यहां एक सिल्वर कलर की गाड़ी है।